बड़े बड़े पेड़ भी है आसमान नीला है और बहुत सारे यहां पे बादल है।

जो रखे गए हैं यहां पे जो बंधें हुए हैं और पुट्ठे में भी यहां पे चूड़ियां हैं।